सुनहरे रंग की है और इस इमारत पे कुछ बोर्ड भी लगा हुवा है।

आपको इस चित्र में एक आदमी काला रंग का टीशर्ट पहने हुए कपड़ो को इश्तिरि करते हुए दिख जायेगा।

और यहाँ पे एक पंखा भी लगाया गया है एक नहीं दो पंखे लगाये गये है। एक--

और इसमें कई सारे वस्तु है जो हम काम कर सकते है।

बच्चो के बड़ो के महिलाओं के और कई अन्य तरह के कपड़े यहाँ पे टँगाये हुए है।

आपको इस चित्र में एक स्विमिंग पूल नज़र आ रहा होगा जो कि बहुत आलिशान है।

लोग बहोत खुश है और यहाँ पे खुला आसमान--

चित्र में एक नदी दिखाई दे रही होगी जहाँ पे एक सूरज डूबने का नजारा भी दिख रहा है।